तालाब में हमें बहोत सारी चीजे दिखाई दे रही हैं एक पुल बना हुआ है जोकि सीमेंट का बना है।

यहां पर हमें गुलाबी हरी नीली पीली काल--